यह फूलों की शॉप अपने फूलों की माला बनाकर बेच रहा हेगा यहा साइड मे एक सीढ़ी लगी हेगी और इसमे टॉवल टंगी हुई हेगी।

वहाँ पर कुछ महिलाये कुछ बच्चे कुछ लड़के कुछ आदमी नाहा रहे हेगे और यहाँ पे साइड में पेड़ पौधे हुए काफी सारे

यह एक वॉटर-स्लाइड है वॉटर-स्लाइड स्विमिंग पूल बना हुआ हेगा इसमे पानी भरा हुआ हेगा ]